बेड बिछा हुआ है जिसमे सफ़ेद रंग का चदरा है भूरे रंग की ज अ--

यहाँ पे दो लडकियाँ जोकि सेल्फी ले रहीं हैं एक लड़का बाइक में खड़ा हुआ है।

गुलाबी में भी हैं लोग खड़े हुए हैं पैर दिखाई दे रहें हैं बाइक और स्कूटी खड़ी है और पेड़ का नी पेड़ भी है जो दरवाजा जोकि सफ़ेद रंग का--